कलर कलर का और यहाँ पे एक बोर्ड है जिसपे कपड़ा का --

चार लोग बैठते हुए --

वहाँ से दिख रहे हैं।

यहाँ पे गाड़ी ओड़ी उलटा हुआ हुआ --

ये फील्ड जैसा है। पार्क जैसे छोटा मोटा --

यहाँ पे बरा सा दिख रहे हैं।

पहाड़ के ऊपर में घास सी दिख रही है। पहाड़ पे चढ़ने के लिए के रस्ते --